चित्र में एक काला सा जीप नज़र आ रहा है और और छोटे - छोटे पौधे नज़र आ रहे हैं कुछ पहिये रखे हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ पेड़ भी दिख रहे --

इस चित्र मे दो भालू और दीवार से घिरे हुए दिख रहे हैं। कुछ पत्थर भी है।

हरे रंग के पेड़ पौधे भी है। पीले रंग के कुछ फूल के फूल के गमलें भी रखे हुए है। मैदान बड़ा है।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

और साथ में चट हरी वाली चटनी भी है। खाने के ऊपर दही पर हरा रंग का चटनी नजर आ रहा है।

यहाँ पर कुछ पानी दिख रहा है पानी को गेट खोलकर छोड़ा जा रहा हे ।

यहाँ पर एक व्यक्ति अपने फोन से फोट-तस्वीर खीचते हुए नजर आ रहा है।

एक वेक यहाँ पर एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा है।

फल के दुकान लगा रखे हैं। यहाँ पर दो पेड़ भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोग धूप से बचने के लिए पन्नी का इस्तमल कर रहे हैं।